इसमें आसमानी कलर का कुछ पुता हुआ है चप्पले लगे हुए है जिनमे झाड़ी दिख रही है।

यह वाइट कलर का काले कलर का बोर्ड दिख रहा है और पीले कलर के कुछ लगा हुआ है एक ऑरेंज कलर का लगा हुआ है।